यहाँ प्राचीन स्मारक है जो की दिखने में बहुत ही अच्छा मंदिर--

यह एक रास्ता है छोटा सा जो की एक छोटा सा आम रास्ता है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे स्थान तक आसानी पूर्वक जा सकता है।

ठीक उसी तरह यहा माल को दिखाया गया है जोकि बोहोत ही टिकाऊ मजबूत बना रेहता है।

सभी जगह गमला लगा हुआ है एक स्थान से दूसरे स्थान गमला तोड़ने के लिए जाते हैं और फूल तोड़ने के लिए जाते हैं मैदान बहुत ही अच्छा हरा भरा खिला हुआ है।

माली आता है और तोड़ कर चला जाता है।

ठीक उसी तरह डी_सी_बी बैंक का नाम है बैंक मे जाते हैअपने ए_टी_एम से पैसा निकाल के रिटर्न वापस आ जाते है।